और एक नहीं अनेक कार हैं जैसे व्हाइट हो गए रेड हो गए बहोत पुराने पत्थरें दिख रहे हैं कुछ सोसायटी बिल्डिंग दिख रही है।

तो गुलाबी कलर का फूल दिखा वो भी घर के बाहर।

और इसे पैक किया गया है जब तक ट्रेन नहीं आती।

आसमान काले बादल नीले बादल हैं।